रोड के रोड पर एक गाडी जा रही है रोड के बगल में बहुत सारे पेड़ हे पेड़ दिखाई दे रहे है।